ग्रोसरी के तथा बगल में बहोत बड़ी--

के छत पे बॉर्डर भी लगा हुआ है।

ऊपर काफी अच्छी लाइटो से सजा रखा है रंग-बिरंगी--

एक घर है तीन मंजिले का उसके बगल भी इतने सारे भवन है भवन के ऊपर पोस्टर लगा हुआ है।

इस फोटो के अंदर आप देख सकते है की एक--

पुराने - पुराने भवन दिखाई दे रहै है तथा एक --

खुला आसमान तथा कुछ-कुछ बादल दिखाई दे रहे थे तथा सामने एक पेड़ भी दिखाई दे रहा जो की--

तथा दुकान के सामने बाइक भी दो दिखाई दे रही जिनस्के ऊपर पोस्टर भी लगे हुए है।